एक रिक्शा वाला दिखाई दे रहा है। रिक्शा बिजली दिखाई दे रही है। पीछे रोड साफ दिख रहा।

और संतरे भी रखे हुए हैं। अनार रखे हुए हैं।

और क्रेडे भी रखी हुइ हैं।

सफेद रंग की क्रीच खिची हुई है।

एक खेत दिख रहा है उसमें फसल है।

पाँच-पाँच मंजिला की तीन इमारतें दिखाई दे रहीं हैं।

एक लाल रंग की एक पीले रंग की कुछ टेबल रखे हुए हैं और लाइटलिंग --

ढला हुआ है वहाँ पर ग्रिल दिख रही है। गार्डन दिख रहा है। फर्रा दिख रहा है।

उसमें कुछ तोलने वाला कोई कांटा रखा हुआ है।

अंधेरा सा दिखाई दे रहा है कुछ --